डबल स्टोरी बिल्डिंग है जिसका कलर व्हाइट और रेड है।

और नीचे यहां पर अ पांच से सात लोग दिखाई दे रहे है उनके साथ में दो या तीन बच्चे है जो खेल रहे है छोटे छोटे--